घर है और मुख्य द्वार है मुख्य द्वार के अगल बगल में पोस्टर लगाए हुए हैं।

इस चित्र में बहोत सारे वाहन है ।

सड़क के किनारे हरे रंग का एक बोर्ड है और एक मोटर साइकिल पे एक पुरुष है।

उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

इस क्षेत्र में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

के अंदर से एक व्यक्ति निकल रहा है जिसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे है।

दीवाल पे बहुत सारी सजावटी चीजें लगाई गई है।

सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है।

इस चित्र में बहोत सारी लड़कियों की मूर्तियां रखी गई है।

इनमें से दो मछलियों के आकार की है और छे पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई है जिन्होंने अलग अलग रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

इस पर तीन लोग खड़े हैं जो पुस्तक खरीद रहे हैं।

इसपे एक पीले रंग का बोर्ड है और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

इस चित्र में एक काले रंग का बास्केट है बास्केट में बहुत सारे आलू रखे हुए हैं ।

और कुछ गोंद भी रखे गए हैं और इसपे एक पुरुष खड़ा है।